कुर्सियां उम्म ग्रे कलर का है और वह लोहे की मदद से बनाई गई है।

यहां पे एक बहुत बड़ा कोर्ट नजर आ रहा जिसमे सामान रखे गए--

एक व्यक्ति कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और वह कान में मोबाइल लिए हुए हैं।

यहां पे एक बड़ा सा कोट भी नजर आ रहा है आ उसका कलर क्रीम कलर का है।

एक दुकान का अंदर का दृश्य है।

जहां पर दुकान के अंदर बहोत सारे अलमारियां नजर आ रही है।

तथा यहां पर बहुत सारे कठपुतलियां भी बनाई गई है।

जहां पर कार का कलर ग्रे कलर का है।